इस चित्र में एक भवन दिखाई दे रहा--

वहीं कुछ बगीचा दिखाई दे रा--

वहीं पर एक झंडे का पोल लगा हुआ है।

उन रैक्स पर नीले रंग की लाइट जल रही है।

जिसमें एक लाल रंग का बड़ा गाउन दिख रहा--

प्रवेश द्वार के आजू बाजू दो गुम्मदनुमा आकृति है।

उसके हाथ में कुछ औजार हैं।

वो एक कुछ झाड़ियां दिखाई दे रही है।

जिसके पीछे बहोत ही सुंदर फूलों से सजाया गया--

इस चित्र में कुछ भवन दिखाई दे रहे--